यहाँ द हिंदुस्तान कोचिंग इंग्लिश का है।

बो बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं।

ये एक बुक का दुकान है राजा बुक ।

और यहाँ पे सजा हुआ है पीछे बलून लगा हुआ है।

ये शादी के जोड़े का पिक है जैसा लडके का कोट हो सकता है या फिर हाफ बाजू का ।

ये शायद अभी बंद है।